पीछे स्कूल है उसके। उसके बाजू में एक बिल्डिंग है और दो बिल्डिंग और यहाँ पर पेड़ भी हैं और एक बीच में से तार गया है बिजली वाला।

पीली पन्नी है। एक नीला बॉस्केट है और एक नीली सफ़ेद कलर का कुछ चड़ा टंगा है और एक बांस --

सब लोग उसे देखने में लगे हैं ओर उसमें ला कटाई कर --

यहाँ पर जिम है जिम में तीन डम्बल रखे हैं। और--

एक होटल है और बहार उसके उसपे रेलिंग लगी है बोर्ड लगा है एक रूम दिख रहा है और कांच दिख रहा है।

उ लाल कलर का है और एक पिलर है।

यहाँ पर एक स्कूल है शेर प्लॉटिंग संस्था केंद्र और यहाँ पर एक जाली है उस जाली पर पोम्प्लेट है।

और तीन बोर्ड हैं और एक स्कूल है इसमें पीला कलर है।